और यहां छोटे-छोटे अलग-अलग फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

ये यह एक बड़ी सी मंदिर दिखाई दे रही है और यहां मंदिर के ऊपर झंडे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे मंदिर के पास बहुत ही बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक कंपलेक्स दिखाई दे रहा है और कुछ दुकान और कार --

यह एक कैंपस दिखाई दे रहा है और यहां बहुत सारी--

हरे-हरे घास है छोटी सड़क है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दुकान है और यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और यहां बहुत सारे वायर्स हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे प्लास्टिक्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे पकड़ पाना और यहां पे एक बड़ा सा हथौड़ा दिखाई दे--

और ये नेकलेस के ऊपर बहुत सारे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे अलग-अलग बैंगल्स दिखाई दे रहे हैं स्टोन के नेकलेसेस दिखाई दे रहे हैं।

कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो कि यहां पे ज्वेलरी खरीद रहे हैं।

यहां दूकान की अंदर एक छोटा कैमरा लाइट और फैन भी दिखाई दे रहा है।